यहां पे एक जे_सी_बी खड़ी हुई है जो गड्ढा खोद रही है।

कुछ लोग यहां पे बैठे हुए है इन पत्थरों बीच में से हरी हरी घास निकली हुई है।

ये एक गेस्ट हाउस है और यहां पे बहुत सारे लोग टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

यह टमाटर रखे हुए हैं जो क्रेटी में है।

बड़ी सी घड़ी टंगी हुई है और यहां से एक आदमी बैठा हुआ--

ये एक बड़ा सा माल है यहां पे फाइबर के बर्तन वगैरा मिलते हैं।

जैसे कप है प्लेट है बाउल है।